एक बोर्ड रखा हुआ है ब्लैक कलर का जिसपे लड़का बना हुआ है। एक लड़का मिरर सेल्फी ले रहा है ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ है एक पीछे रेड कलर की--

ये एक फ्रूट शॉप है जहाँ सेब रखे हैं ऑरेंजेस रखे हैं घी रखी है।

ये एक तस्ल में लीची रखी हुई है कुछ रेड कलर की है कुछ क्रीम कलर की है पत्ते रखे हुए हैं।